यहाँ पे मेकेनिक कुछ मेकेनिक कार को बना रहैं हैं कुछ कार को ऊपर करके उसके नीचे की पार्ट को कुछ ठीक-ठीक कर रहैं हैं।

ये फोटो किसी अ अ किसी रेस्टोरेंट का है जहाँ कुछ दोस्तें पार्टी कर रहे हैं कुछ लड़कियाँ पार्टी कर रही हैं।

साथ ही बहुत सारा टेबल लगे हुए हैं कुछ लोग वेटर लोग आ रहे हैं दे रहे हैं सामान खाने-पीने की सामान ला रहे हैं।

फोटो किसी बस स्टैंड का है जहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे चार बसें लगी हुए हैं कुछ यात्री यहाँ पे हैं कुछ का सामान आगे रखा है कुछ लोग उधर जा रहे हैं।

और यहाँ पे दोनों छेनी-हथोड़ी मार के और इस बिल्डिंग को तोड़ रहे है तोड़ने की काम कर रहे हैं कुछ बल्ला-पाइप भी लगाये हुए हैं।

लग रहा है यहाँ एक बाइक लगा हुआ है कुछ बाइक नदी के बीचो- बीचो जो एक सड़क जा रहा है उधर से भी जा रहा है एक अ पुलिया भी बनाया हुआ है एक नाव ---

किसी नदी किनारे का है नदी के पास बहुत सारे घूमने वाले लोग आये हुए हैं घूम रहे हैं एक --

इंसान धोती कुरता पहने हुए हैं स्वेटर और ऊपर से ब्लू कलर का शोल भी लगाये हुए हैं।